वो वाली ने वाइट कलर का टी-शर्ट और तीसरी वाली बच्ची ने ब्लू कलर और पिंक का टॉप पहन रखा है।

ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है इस लिए यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन भी है जहाँ बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

देखिए यहाँ एक नाइ की दुकान है जहां पर लड़का एक फोटो खीचां रहा है जिसकी सर पर कम बाल हैं।

फ्लावर लगे हुए हैं उपर बीच वाले पे हॉल में भी फ्लावर लगे हुए हैं उपर भी फ्लावर लगे हुए हैं वाइट और पिंक ।

देखिये यहाँ आरती बुक सेंटर है इसमें बहुत सारी भीड़ लगी हुई है आस-पास भी इसके पब्लिक खड़ी हुई है।

ये उपर ये पब्लिक कलर के टाइल ।

यहां पर एक आदमी है जो पाइप लेके खड़ा है आसपास न छोटे छोटे नीचे टाइल्सें हैं।